एक मकान है मकान के ऊपर लोगे की रेलिंग लगी हुई है दरवाजे लगे हुए हैं शटर लगे हैं।

बहुत सारी दुकानें है दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए है।

कार है। कार पे छोटा बच्चा बैठा हुआ है पास में बोहुत सारे आदमी खड़े हुए --

पीछे लाइटें जल रही ऊपर से बिजली की तारे निकली हुई हैं।

खंबे पे एक बड़ी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है चारों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है मेज है।

बाहर एक पर्दा लगा हुआ है कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

उसके ऊपर एक तार निकला हुआ है पीछे खंडहर है दिवाले बनी हुई है।

एक अह बहुत सारे आलू हैं कुछ छोटे आलू हैं कुछ बड़े आलू हैं।

एक सफेद रंग की दीवाल है दीवाल पर बास के बने हुए कटोरी और सुराही रखी हुई है।

सड़क है सड़क के किनारे एक खंभा लगा हुआ है खंबे पे एक पोस्टर टंगा है।

एक कांच की बोतल रखी हुई है आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में घड़ी है।

एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के पास में थ्रेसर जुड़ा हुआ है जो हरे और पीले रंग का है।

ट्राली के पास में बहुत सारे बड़े बड़े हरे पेड़ खड़े हुए हैं एक पीपल का पेड़ है।

एक पानी की बोतल रखी हुई है फिंगर मशीन रखी हुई है।

एक आदमी के हाथ में थैला है एक आदमी के गले में गमछा पड़ा है।

एक जिम है जिम में एक लड़का है जिसने काले रंग की बनियान पहन रखी हुई है।

पीछे शीशा लगा हुआ है बहुत सारी मशीनें रखी हुई है डंबल रखे हुए हैं।

गेहूं बोआई करने वाली है जो नीले रंग की है सड़क पे मोटरसाइकिल है बहुत सारे सामान पड़ा हुआ है।

पीछे बोर्ड लगा हुआ है एक मकान है मकान पे सिर्फ की टंकी रखी हुई है।

डिब्बे रक्खे हुए है दीवाल पे एक बिजली का मीटर लगा हुआ है एक केबल निकली हुई है।

ऊपर एक रॉड जल रही है। ऊपर एक तेल रखा हुआ है नीचे तखथ है। तखथ पे काउंटर है।

नीचे फर्श है फर्श का रंग पीला है पास में लाल रंग के गत्ते रखे हैं।

नीचे मेज है जो कांच की बनी हुई है पास में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

एक मकान है मकान में खिड़कियां लगी हुई है जो कांच की बनी हुई है।

दीवाल पे लोहे का शट्टर लगा हुआ है एक पंखा लगा हुआ है ऊपर गोल झूमर वाली लाइटे लगी हुई हैं।

एक पुराना खंडहर है जिसके बीच में गोल गुंबद सा बना हुआ है।

जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और जिसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी है।

दो लडकियाँ हैं जिन्होंने काले रंग का सूट पहन रखा है जीन्स पहनी हुई है।

एक कमरा है कमरे में एक मशीन लगी हुई है मशीन काले रंग की है।

पीछे दीवार है दीवार पे बल्फ जल रहे हैं दीवाल पे काले और पीले रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

पी_बी इंडिया भरोसे का प्रतीक चौबे मार्केट द्वितीय तल सागर रोड ललितपुर नीचे खिड़की लगी हुई है।